ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी दिखाई दे रही हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारी--

--हुए नजर आ रही है और हमें यहाँ पर बहुत सारी रैक में बहुत सारी--

ऊपर एक बोहत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर हमें बोहत सारे बांसे बंधे हुए दिखाई दे रहे है बांसे बंधे हुए इसलिए है की--

बड़ा कमरा दिखाई दे रहा हैं कमरे की दीवार का कलर हमे यहाँ पर लाल नजर आ रहा है और कमरे में हमें बहुत सारी लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं एक लाइट कलर हमे यहाँ पर पीला दिखाई दे रहा हैं एक लाइट का कलर हमे यहाँ पर सफेद नजर आ रहा हैं।

और हम यहाँ पर तीन लोग दिखाई दे रहे है औरतों के हाथों में हाथ लिए खड़े नजर आ रहे हैं एक आदमी यहाँ पर कैप पहना दिखाई दे रहा है जो की काले कलर की टीशर्ट पहना हुआ नजर आ रहा हैं एक आदमी ने यहाँ पर सफेद कलर की टीशर्ट पहना हुआ दिखाई दे रहा हैं।

एक बोर्ड दिखाई दे रही है जो की क्वे-- बहोत ही बड़ी नाँव नज़र आ रही है नाँव का कलर हमे यहाँ पर निला और हरा दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमे बहोत सारे झंडे लगे हुए दिखाई दे रहें झंडो का कलर हमे यहाँ पर पीला और हरा दिखाई दे रहा है और---

रैक के अंदर हमें बहुत सारा समान दिखाई दे रहा है जैसे की बहुत सारे टूथ ब्रश रखे हुए हैं बहुत सारे कोलगेट वॉलगेट नजर आ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी फ्रिज दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे बोटलें नजर आ रही--

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी सफेद कलर की नजर आ रही है बिल्डिंग मे हमें बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है बिल्डिंग के साथ साथ हमें वह पे दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं और हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे जो की बहुत दूर दूर तक फैले दिखाई--

उधर एक बहोत ही बड़ी बोट दिखाई दे रही है बोट हमे पानी में नज़र आ रही है और हमें यहाँ पर क-- कौ एक आकोडा दिखाई दे रहा है जिससे कि बोट रोकी जाती है और उसे रस--